जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक तालाब --

जैसा कि अपन देख पा रहे है यह स्कूल में एक कॉम्पटिशन --

एक कार आयी हुई है टायर लगवाने के लिए और बहु अ --

हाउस नज़र आ रहा है और काफी--

चावल राशन वगेरह आदि सभी चीजे उपलब्ध हैं और यहाँ पे --

ए रखा हुआ है और रोड का कार्य प्रगति पे चल रहा है।

के आजू बाजू काफी सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए है।

परिसर है और परिसर में काफी सारे पेड़-पौधे नवीन पेड़-पौधे अभी-अभी लगे हैं।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक इलेक्ट्रिकल अम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है और --

जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह एक स्टेशनरी की शॉप है। यहां --

नौ और यहां पे और चढ़ने के लिए सीढ़ी भी नज़र आ रही है।

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक फिश मार्केट है और यहां पे काफी सारी फिश --

गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई है और काफी सारे पेड़ भी यहाँ --

जैसे कि अपन देख पा रहे हैं यह एक जिम सेंटर है और जिम सेंटर के बाहर --